और स स ऊपर से एक ओवर बीज गुजरा है।

यहां पे बहोत अलग-अलग प्रकार के महंगे-महंगे कैमरे रखे गए है।

और इस दुकान का नाम अलहुआ कैमरा के नाम से है।

मुझे इस चित्र में एक आसमान दिखाई दे रहा--

दुकान के अंदर पेन और कॉपी भी दिखती है।

और कुछ लोग मशीन की रिपेयरिंग भी करा रहे हैं।

बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं अंदर एक मोबाइल ब मिल की दुकान है।

मुझे इस चित्र में एक मकान दिख रहा है।

और कुछ लोग लाइन से बैठकर पूजा कर रहे हैं।

और मकान में बहुत ही बढ़िया घर दिख रहा है।